आ और आसमान दिख रहा है और वहाँ धूप तपी हुई है और ये दिन का समय है और यहाँ सामने सीड़ी भी दिख रही है और वहाँ कुछ फूल के पौधे भी छोटे--

यह सामने बहुत बड़ा लंबा बड़ा ट्यूब लाइट्स दिखाई दे रहा है और स-साइड मे कुछ बड़े-बड़े हरे वृक्ष भी दिखाई दे रहे है।

और बाहर कलर कलर के सभी कलर के कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा है और नीचे भी दिख रहा है |